सामने एक बोर्ड दिख रहा है जिसमें नीले और सफेद रंग से लिखा हुआ है। साइड में एक खम्बा है।

ऊपर एक सफेद रंग का बैनर दिख रहा है नीचे ब्रॉउन कलर का बोर्ड दिख रहा है।